और ये दो ठो बछड़ा टाइप में है एक ठो बड़ा सा है दो गो उसके बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा वो दूध उध देते हैं।

और जो कुम करता वाला भी से वो वाला लाइट से भी सजाया गया बहुत सारा कुर्सी टेबुल् है और यहाँ पर।